ई फोटो में एगो दीवाल बाटे जे पर उजर रंग से दू-तीनगो दिल बनावल बा।

इ फोटो एगो सरकारी स्कूल के बा जेकर गेट के दरवाजा करियर रंग के बा अउरी खिड़कियों के दरवाजा करियर रंग के बा।

ओर इ गिलास रखल बा इ टेबल के ऊपर के फोटो ह | इमे माई मिक्की माउस बनल बा ।

और ये और ये प्रेक्टिस करता ग्राउंड में।